वहाँ से कुछ धुएँ की तरह भी उड़ता दिख रहा है ।

इस हॉल मे बहुत सारी जालियां लगी दिखाई दे रही है।

घर के घर थोड़े पुराने दिख रहे हैं ।

जिसके अंदर आया और जाया जा सकता है ।

इस टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर रखा दिखाई दे रहा है ।

इसके किनारे की तरफ एक बिल्डिंग दिख रही है।